यह एक चित्र है यह एक गहरा घना समुंद्र है।

इसमें बहुत शारे शटूडेंट बैठे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे अलग अलग एंगल पे लगे हुए हैं।

इसके अंदर शीशे का गेट लगा हुआ है।

इसके पीछे बहुत ज्यादा पौधे भी लगे हुए हैं।

इसमें एक कमरे को दिखाया गया है।

उसके पास थोड़ी दूर ऊंची ऊंची बिल्डिंगे बनी हुई है।

इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं।

इसमें बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

इसमें एक मकान के छत को दिखाया गया है।

इस पर ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर पानी का टैंकर भी रखा हुआ है।

इसमें एक गहरा घना समुद्र दिखाई दे रहा है।